कोई एक सड़क का नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो बेहत ही अच्छा नज़ारा सड़क है और सड़क के बाहर मे बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई है पार्किंग में--

और बेहद ही मेहनत से बनाई जा रहे है और एक-एक करके फूल दिए-दिए जा रहे है डिजाईन का फूल-फूल का डिजाईन बार कर रहे है ।

काम करवाते हुए नजर आ रहे है और अपने -अपने कार्य पे व्यस्त हैं।